ये हाँ नदी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर सब काला काला दिखाई दे रहा है।

बहोत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है ऐ बच्चा दू- यहाँ पर मुझे दो पेड़ झुके हुए दिखाई दे रहे है।

मुझे यहाँ एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के अंदर दुकान रखी हुई है।

एको बिल्डिंग दिखाई दे रही है मुझे बिल्डिंग का दरवाजा दिखाई दे रहा हैं।